काफी सारे साधु हैं भगवा कलर पहना हुआ है इन्होंने बोहोत शांति से ये अपने पैर पड़ रहे भगवान के और नीचे कार्पेट डली हुई है ऊपर बहुत बड़ा पेड़ यहाँ आ रहा है।

जो दिख रही है यहाँ गेट भी बंद है कुछ बहुत सारे मजदुर यहाँ पे काम कर रहे हैं। और ब्लैक एंड वाइट है मुझे कुछ समझ नही आ रहा है।

गार्डन न् का नजारा है। यहाँ काफी सारे फूल लगे हुए है। शायद पार्क है पर पूल लगा है। पीछे पेड़ लगे हुए हैं --

पीछे एक मोर दिखाई दे रहे है सफ़ेद और पीले टाइप का मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर अउ एक --

ये एक कड़ाई में एक बड़ा पनीर रखा हुआ है। नीम्बू और दो काटे का एक काटे वाला चमच्च रखा हुआ है।

यहाँ पे किसी का खेत है| वही पे एक रोड है| ऊपर बहुत बड़ा बादल देखने को मिल रहे है| आसमान है नीले कलर का --